हम दो चार लड़के हैं एक बड़े सर हैं एक मैम है।

ये किसी चीज़ की दुकान है यहाँ पर--

कांच रेड कलर का है एक--

और उसमें एक बहोत सारी जनता बैठी है बस में।

और बहुत सारी कार है यहां पर।

और एक मंदिर के ऊपर एक पेड़ भी है और एक लेडी छाता लेकर भी आ रही है।

यहां पर एक डोगी भी आ गया है।

टी_वी के सामने एक उम्म् टेबल रखी है जिसपे दो बॉटल रखी है।